पेड़ है कई सारे लंबे फील्ड है।

नृत्य कर रही हैं पीछे शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है और बड़ा-सा स्टेज --

बिक्री कर रहा है यहाँ देख सकते हैं कई सारी मछलियाँ मरी हुई हैं।

मैप या हम कह सकते हैं डेमो दिखाने के लिए खड़े किए गए हैं।

कई सारे पशु आदि लोग खाते हैं पत्ता गोभी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है।

यह एक बड़ा सा सुपरमार्केट है इसमें बर्तनों की दुकान --

यह एक बड़ी-सी कंपनी का बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है। ऊपर खुला आसमान दिखा रहा है इधर-उधर कई सारी पहाड़ें आदि दिखाई दे रही हैं। एक सड़क दे रही है।

पोटली में काँटें नहीं है।